लग रहा है कि यहां पर कोई सा त्यौहार--

और उस हाथी पर एक लड़का बैठा हुआ--

खड़ी हुई नज़र आ रही हैं।

किसी का घर या ऑफिस नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक मिठाई की दुकान--

और इस दुकान पर कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

एक लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

नजर आ रही है और वहां पर एक लड़का--

लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके बोर्ड पर छतेनी लिखा हुआ है।